और पास ही में टंगी हुई कुछ टोपियां भी हमे इस दृश्य में दिखाई दे रही है।

और एक लड़की अपनी माँ से बात करती हुई इस दृश्य में हमें दिखाई दे रही है।

यह दृश्य टेलर मशीन का दृश्य है।

पास ही में हमे एक ओर वाहन दिखाई दे रहा है।

और सूरज की किरणे भी पड़ती हुई हमे इस दृश्य में दिखाई दे रही हैं।

पास ही में हमे ऐ पैर पौधे भी दिखाई दे रहे है |

कुछ लोग भी दिखाई दे रहे हैं |

जिस पे हमें कुछ आदमी और कुछ औरतें दिखाई दे रहीं हैं।

इस दृश्ये में दो इमारते दिखाई दे रही हैं |

तीन आदमी हमें खड़े हुए दिखाई दे रहें हैं और --

आदमी दूसरे आदमी से बात करता हुए हमे --

दुकान में दो लड़के और एक दुकानदार हमे दिखाई दे रहा है |

इस दृश्य में हमें एक बगीचा दिखाई दे रहा है।

और एक आदमी चक्र पे जाता हुआ --

और ऊपर एक पंखा भी दिखाई दे रहा है।

दृश्य में हमें एक सड़क दिखाई दे रही है।